यहाँ पर बहोत ही पुराना हमको इमारते दिखाई पड़ रही जोकि जर्जर हो चुका है और--

इसमें छोटे-छोटे मूर्तिया ये की छोटे-छोटे चुने हुए पत्थरों से बनाए गए है एसे नज़र हमको दिखाई पद रही है इसमें तीन लोग दिखाई पड़ रहे है इसमें तीन लोग दिखाई पड़ रहे है और ऊपर में--

यहाँ पर बीच मे यहाँ पर पेड़-पौधे घाँस लगाया गया है जो की बीच मे व्यक्ति यहा पर डोंगा चला रहे है ऐसे दिखाई दे रहे है और दीवार में यहा पर बहुत ही बड़िया कलाकृति किया गया है।

हम सब जानते है हमको देख भी चुके है और इसमे एक व्यक्ति जो है पूरे अपने से चहरे को ढँक कर और ये चश्मे लगा कर और एक बाइक में सफर कर रहे है।

और इसमे सामने भी डेकोरेशन भी किया गया है और विकाश डेंटल क्लिनिक हम को यहाँ से दिखाई पड रही है और स्ट्रीट लाइट भी जल रही है।